अच्छा तरीका से बाल को काटा जाता है और यहाँ पे तरह-तरह के अम डिजाइन से बाल को काटा जाता है यहाँ पे बहुत सारे लोग दाढ़ी फेशियल करवाने के लिए भी जाते हैं और मस्त --

यहाँ पे एक स्विमिंग पुल है यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी है इस स्विमिंग पुल में| इस स्विमिंग पुल में बहुत सारे लोग स्विंग करने के लिए भी जाते हैं और यहाँ पे बहुत लोग स्विमिंग सिखने के लिए भी जाते --